और इसमें बहोत सारे विंडो लगी हुई है जिनमें कांच है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

एक मगी रखी हुई है जिसमें फूल लगे हुए हैं और यहां पर एक घड़ी लगी हुई है और बहुत अच्छे --

नदी में बहोत ज्यादा पानी है जहाँ पर हरी-भरी घास दिखाई दे रही हैं एक नेटवर्क का टावर दिखाई दे रहा है और खुला आसमान है।